यह एक पैडी है इस पर एक मकान बना रखा है।

दीवार पर पीले कलर का रंग हो रखा है वहां पे खंभा भी है और खंभे से आगे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है नीले कलर का।

यह एक रूम है इस रूम में सोफे पड़े हुए हैं ये सोफे ब्लैक कलर के व्हाइट कलर के चॉकलेट कलर के हैं।

उसमें पीले कलर वो रखा है और नीचे रेड कलर का रंग हो रखा है।

और नीचे पीले कलर का भी है वहां पर तीन मेज भी रखी हुई है नीचे पत्थर बिछा हुआ है।

कुछ मशीन लाल कलर की और एक मशीन काले कलर की भी है।

यह एक रोड है इस रोड पे एक आदमी मोट्स बाइक लेके जा रहा है।

उस दुकान में एक आदमी बैठा है कुर्सी पे और दूसरी साइड में दो लोग भी खड़े हुए हैं।

और वहां पे कुछ लाइट भी चमक रही है उसके बराबर में एक दरवाजा भी है वे आधा खुल रहा है।

उस टम्पू में दो आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी ने लाल कलर की शर्ट पहन रखी है।

एक आदमी ने व्हाइट कलर की पहन रखी है सामने एक गेट भी है वह गेट पे बराबर साइड में लाल कलर रंग भरा है।

यह मंदिर है उस मंदिर के ऊपर तीन बच्चे भी है।

और निचली साइड में एक फोन भी है उसके बराबर में एक मशीन और एक कीपैड रखे हुए हैं।

दूसरी साइड में वूफर भी है वह इस मेज पर पीले पीला रंग हो रखा है।

यह एक ट्रेन जा रही है इस ट्रेन के बराबर में तीन चार यहां पर बैठने की सीटिंग बना रखी है।

और नीचे खिलौने कुछ कार है कुछ उसमें ट्रक भी रखे हैं और कुछ कार वैसी भी है।

और नीचे एक कुर्सी भी है और कुर्सी का आगे एक और मेज रख मेज रखी हुई है।

और सूरज पूरा चमक रहा है और इस कमरों पे वाइट कलर का रंग भी हो रखा है और उसके बराबर में दो दरवाजे भी है।

और सामने कुछ लाइट भी चमक रही है ऊपर कुछ हरे कलर के लटक रहे है।

यह एक शोरूम है जूतों का उसके अंदर जूते भी रखे हुए हैं और उसमें तीन मेज भी है सफेद कलर की।

यह एक अस्पताल है अस्पताल में चार डॉक्टर एवं डॉक्टरनी बैठी हुई है।

दरवाजे के बराबर में चॉकलेट कलर भी हो रखा है और चॉकलेट कलर के ऊप--

यह एक रूम है इस रूम में कुछ औरतें भी हैं उन औरतों ने अपने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं।

और ओढ़नी से मुंह छिपे हुए है और एक दीवार पर बराबर में वाइट कलर हो रखा है।

और नीचे मैट है नीले कलर की और बराबर साइड में लाल कलर का पर्दा भी है।

यह यहां पे पहाड़ है और पहाड़ के बराबर में एक रोड भी जा रहा है।

वहां पे खंभी है खंभों पे ट्रांसफॉर्म भी है नीले कलर का।

उस औरत का मुंह छुपाया है और लड़का मुंह दिखा हुआ है और लड़कों का आगे कुछ में तीन चार मेज भी रखी हुई है।

और उन से पीछे एक दीवार है दीवार पर लाल कलर हो रहा है और पीछे ग्रिल भी है काले कलर की और नीचे दर्द भरे कुर्सी रखी हुई है कुर्सी का--

वो पिछली साइड में एक दीवार पे क्रीम कलर का वो रखा है। उसमें कुछ लाइट भी चमक रही है। नीचे मैट नीनी नीले --

और मेज भी रखी है इस मेज पर एक बहोत बड़ा कागज भी रखा हुआ है।

कुछ सूट भी हैं और कुछ सूट पीले कलर के हरे कलर के अ लाल कलर के भी हैं।

यह एक रूम है इस रूम के अंदर एक स्टूल और दो कुर्सी भी रखी हुई है।

और वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है उसका मुंह छिपा हुआ है पाली साइड में एक बोर्ड भी है उस बोर्ड के अंदर कुछ लाइट भी चमक रही है।

और ऊपर दो खंभे से भी है और दो खंभे भी लगे है और पिछे नीला कलर चमक रहा है।

यह एक बिल्डिंग तैयार हो रखी है उसी बिल्डिंग के बराबर में कुछ पैड बांध कर रखी है लवे की--

एक गो इंसा आदमी के हाथ में एक कागज भी है दूसरा आदमी ने एक--

यह एक जिम है और इसमें कुछ सामान भी रखा हुआ है।

और वहां पे एक आदमी भी है होमगार्ड । जने काले कलर की पैंट पेहन रखी है।

और बराबर साइड में नीचे एक दरवज्जा है वो बोहोत ही हल्का दिखाई दे दे रहा है और नीचे इसमें चटाई बिछी हुई है।

यहां एक बड़ा बड़े में टेंट लगा हुआ है और स्टैंड के अंदर कुछ आदमी भी है।

और वाली साइड में धरती पे कुछ कार खड़ी हुए हैं। वे खा लाल कलर की और व्हाइट कलर की भी हैं।